यह एक मार्केट है और काफी सुन्दर सा मार्केट है यहा पे बहुत सारे मार्केट का आदमी सब आए हुए है कुछ आदमी भी दिख रहे है।

यह एक बस इस्टेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक बस है और एक बूढ़ी लेडिस उतर रही है बस पे से और एक आदमी भी खड़ा है पिंक कलर का शर्ट पेहन के और---

यहाँ पे एक आन्ध्रा बैंक का ए_टी_म है यहाँ पे और उसके सामने लिखा हुआ एक्सिस बैंक और ऊपर में लिखा हुआ है मनपुरम गोल्ड लोन इंटरनेट भी लिखा हुआ है।

ओ- एक और औरत जो भी साड़ी पेहन के खड़ी हुई है और यहाँ पे जेंट्स भी है जो शर्टस पेहन के खड़े हुए है।

और काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर की चेयर लगी है ब्लैक कलर की टेबल लगे हुए है और डेकोरेशन भी किया गया हुआ है और लाइटे लगी---

और पेन भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफी जाना अच्छा लग रहा है और यहाँ डस्टबिन भी रखा हुआ है पास---

काफी ज्यादा सुंदर सा ए_टी_एम है।

और एक टेंपो है टेंपो में जो येलो कलर का है और एक उसमें आदमी बैठा हुआ है टेम्पो का मालिक और पेड़ भी देखने को मिल रही हैं और काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है।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

यहां पे दो आदमी है एक आदमी मिरर में सेल्फी ले रहा है और उसका मुंह पे फेसपैक लगा हुआ है और पीछे पानी सब रखे हुए हैं मटका भी रखा हुआ है और तौलिया भी रखा हुआ है।

और बाइके भी लगी हुई देखने को मिल रही है कुर्सी भी लगा हुआ देखने को मिल रहा है और ये आदमी सब जा रहे हैं।